यह एक चर्च की तस्वीर है। यहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा है।

यह एक काली बस की तस्वीर है जो बंदीपुर टाइगर रिज़र्व जा रही है।

यह एक पार्टी का फोटो है। इसमें एक आदमी और एक औरत एक पुतले के बगल में खड़े होकर --

यहाँ पर लोग अपने काम से आए हुए हैं। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं।

यहां पर बाएं तरफ एक ए_टी_एम है और दाएं तरफ बैंक के अंदर जाने का रास्ता है।

यह एक दुकान है। यहां पर कई तरीके के खिलौने व स्टेशनरी की चीज़ें मिलती हैं।